इसमे एक बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग का भी व्हाइट कलर से पेंट की गई है कुछो कुछ पर्पल कलर कुछ येलो कलर है कुछ पिंक कलर से पेंट की गई।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं बिल्डिंग काफी पुरानी बिल्डिंग पूरी काली हो चुकी हैं यहाँ पर दो लोग हैं जो बिल्डिंग के सबसे ऊपर बैठे हुए एक ने रेड शर्ट और एक ने स्काई ब्लू शर्ट पहना हुआ हैं यहाँ पर नीचे बहोत सारा कचड़ा पड़ा हुआ हैं। यहाँ तीन खिड़कियाँ बनी हुई है ।